पिग दिख रही है यहां पर लोग काम करते हुए नजर--

पेड़ दिख रहे हैं हरियाली दिख रही है।

काले अंगूर के गुच्छे रखे हुए--